यह एक कमरा है कमरे में कई सारे बक्से रखें हुए--

अंदर दुकान में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ हैं जिसका रंग सफेद हैं।

के रोल पड़े हुए हैं और साइड में कोई समान है।

टेबल लगा हुआ है जिसका रंग ब्राउन है।

नेक्स्ट जैन स्कूल लिखा हुआ है उसके नीचे काले रंग में जबलपुर सरना लिखा हुआ है।

जहां पर एक लड़का जिम कर रहा है।

वो लेग प्रेस की मशीन पे लेग स्क्वाट कर रहा है।

अंदर बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं।

मैदान में एक कुर्सी रखी हुई है।

टेबल के सामने एक कुर्सी लगी हुई है जिसका रंग काला है दो मॉनिटर लगे है जो काले रंग की कुर्सी की तरफ --

जहाँ पर बहोत सारा सामान टंगा हुआ हैं और बहोत सारे शर्ट्स बने हुए--

सभी के हाथों में कॉपियां हैं और पेन भी है।